और यहां पे काफी सारे कंप्यूटर भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक सा है जो उनके पास में --

जो ताजमहल की तरह चिनवाई की हुई है इसके और इसके पास ही में तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक येलो कलर का फूल है और एक ऑरेंज कलर का फूल है और एक हल्दी कलर का फूल भी है।

और दूसरे घर का गेट है जो एक लड़का ढक रहा है।

जिसके अंदर तीन मूर्तियां हैं और तीनों पे माला चढ़ी हुई दिखाई दे रही है।

हां जिसके पास ही में एक मकान है और दूसरी साइड एक बड़ी दीवार भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी सारे टेबल रखी हुई है और काफी सारी कुर्सियां भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और इनके पास में दो कट्टे पड़े हुए दिखाई दे रहे है।